और पीछे कुछ मिट्टियों का ढेर दिख रहा हैं।

और सामने एक गेट है और कुछ सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए ऐर सीढियों के बगल से एक पेड़ है और पीछे ऊँचे आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें सफ़ेद कलर के बादल छाये हुए है ये किसी चीज़ की बाउंड्री है।